ये एक बुद्धा का स्टेचू है जो कि किसी पार्क में रखा गया है।

ये एक एस_बी_आई बैंक --

ये जो स्तंभ है ये हमारा नेशनल एम्ब्लम है जिसमे कि --

यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की शादी हो रही है पंडित --